और पानी में कई कचड़े भी पड़े हुए हैं। साइड में बोहोत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं और यहां --

सेवंथ डे लिखा हुआ है और यह एक चर्च भी नजर आ रहा है। यहाँ पे --

बिस्तर के ऊपर सफेद रंग के चादर बिछाई गई है।

सभी झरनो में से पानी निकल रहा हैं।

केक की पहली सतह ब्रेड की है। जबकि दूसरी सतह में क्रीम भरा हुआ है।

और एक बेंच पे एक हरे रंग की बोटल भी रखी हुई है।

बोर्ड पीले रंग का है। जिसके ऊपर शर्मा स्पोर्ट्स लिखा हुआ है।

कई लाल मिर्चियाँ भी दिख रही हैं और यहां पे एक बोया --

सलून की दीवारों पर दो लड़कों की फोटो बनाई गई है और सामने बाइक और स्कूटी भी खड़ी हुई --

और यहां पे एक झरना भी लगाया गया है।

और प्लेटफार्म के ऊपर एक लाल रंग की बोर्ड में निकास द्वार लिखा हुआ है।